इसमे तीन तरह की मूर्ति है। जिसमे काले कलर का पेड़ है और हरी भरी लिव्स है। ये एक बुद्ध टाईप की कोई मूर्ति है।